इसमें मुझे मंदिर दिख रहा है।

इसके बाहर मुझे एक पोस्टर लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे मोर बना दिख रहा है।

इसमें मुझे एक हॉल दिख रहा है।

इसमें मुझे सोफे रखे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे नीला बोर्ड लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे एक दुकान दिख रही है।

इसमें मुझे एक किला दिख रहा है।

इसमें मुझे अंदर फैन लगा दिख रहा है।

इसमें मुझे सैंडल्स लगी दिख रही है।

इसमें मुझे प्लॉट बने दिख रहे हैं।

इसमें मुझे घर के बाहर मैदान दिख रहा है।

इसमें मुझे बांस लगे दिख रहे हैं।

इसमें मुझे गिट्टियां पड़ी दिख रही है।

इसमें मुझे बाहर ग्राउंड दिख रहा है।

इसमें मुझे एक सीनरी लगी दिख रही हैं।

इसमें मुझे जुलूस निकलता दिख रहा है।

इसमें मुझे भगवान के पोस्टर चिपके दिख रहें हैं।

इसमें मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं इसमें मुझे--

इसमें मुझे एक पोस्टर लगा दिख रहा है।

इसमे मुझे कुर्सियां दिख रही है इसमे मुझे कुछ लोग दिख रहे है।